जो की तीन बंदर दर्शाते हैं कि बुरा मत देखो बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो--

यह एक बहादुरघाट एयरपोर्ट की तस्वीर है।

अ और आस-पास के क्षेत्र में पेड़-पौधे और मैदानी स्थान दिख रहा है।

हमें अपनी जरूरत की चीजे आदि किराना सामान हमें वहाँ से प्राप्त होता है।

जहा हम घूमने के लिए भी जा सकते हैं और पेड़ आसपास के क्षेत्र को बहुत ही ज्यादा--

फिजिकली बहोत ही बेहतर होता है और हमें रनिंग भी करनी चाहिए जो की बॉडी से स्वस्थ और अच्छी रहती है जिससे--

जिसकी सफाई कर रहे हैं। और हम जब भी कहीं ले जाते हैं तो ऐसे ही हमारी वाहन की सफाई और की जाती है.

छोटे छोटे से पौधे लगाए हैं जो की देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है और--

कई सारे यहाँ पर बिल्डिंग आसपास नज़र आ रही है ये जगह देखने मे बहुत सुंदर लग रहा है।

यह एक बोट की नांव की तस्वीर है जहाँ रात में उसका फोटो लिया गया है।

हमारी पढ़ाई के लिए बुक्स गाइड कॉपी आदि सारी चीज यहां से हमें प्राप्त हो जाती है जिसके लिए--

बुक्स हमारी पढ़ाई के लिए गाइडस कॉपी पेन आदि सारी चीज हमें वहाँ से प्राप्त हो जा सकती है।

जोकि हमारे जरूरत के लिए भी होती हैं।

और आसपास हरे-भरे जगह है जो की हमारे टहलने और घूमने के लिए भी--

यह एक पार्क की तस्वीर है जहाँ हम देख सकते है।

यह एक पहाड़ी क्षेत्र में एक नदी के किनारे कई सारे लोग हैऔर किनारे में बोट भी नज़र आ रहा है।

और हमें खुशी मिलती है और वहां जाकर और अच्छा भी लगता है।

यह एक झील की तस्वीर है जहां आसपास कई सारे पेड़--

जेंट्स खड़े हो जो की दिख रहा हैं और पीछे की साइड की एक सजावट की गई है जो की देखने में बहोत ही सुंदर हमें लग रहा है।

एक कॉलम बनाया गया है जैसे की हम अपनी तरफ ही चल पाएंगे और वहाँ के लोग भी दूसरी आपके तरफ चल सकते हैं।

जहा छोटे-छोटे बच्चे वहां खेलते हैं हम भी जाते हैं वहां घूमने के लिए--

यह मैदान में एक साइकिल की तस्वीर खींची गई है।